उसके बगल में एक दीवाल है दीवाल मिट्टी के कलर का है उसमें लाइन बना हुआ है।

और यहाँ पर काफी सारे बच्चे हैं जिसमें की एक बच्चा लिख रहा है और एक बच्चा बैठा हुआ है।

और जिसमें की एक बच्चा ब्लू कलर का टी-शर्ट पहना हुआ है और यहाँ पे सर बोर्ड पे कुछ लिखा रहे हैं सर सर के बगल में कुछ रखा हुआ --

और यहाँ पे एक बिल्डिंग है बिल्डिंग चार फ्लोर का है।

और यहाँ पे काफी सारे आदमी है जिसमे की कुछ आदमी टोपी पहना हुआ है।